और ब्रिज है जिसके ऊपर घर बने हैं।

रेड कलर का है वाइट कलर का उसके आगे पर्दा है और उसके फ्लावर से डिजाइन किया हुआ है फ्लावर रेड और वाइट और ग्रीन कलर के हैं।

लोखंड है जो ग्रे कलर के डार्क ग्रे कलर के दिच दिख रहे हैं नीचे भी ग्रे कलर का सब दिख रहा है।

कोई नहीं है जहां पर पूरा खाली है येलो कलर की इस पे लादी लगी हुई है।

पर्दा लगा है जो मल्टी कलर का है नीचे--